बच्चो के हाथ में पेन पेंसिल हैं कार्ड शीट रखी हुई है कंपास है गोंद है बच्चे फर्श पर बैठे हुए हैं कॉपी किताबें है।

पीछे की ओर दो मछलियां भी है जो सुंदर है।

के ऊपर पानी की टंकी लगी हुई है ट्वेल मंजिल का यह घर है नीचे एक दुकान है जिसमें बोहत सारा सामान रखा हुआ है बोरिया भी रखी हुई है और रंग पीला है।